बेड के ऊपर एक ब्लैक कलर का बेग भी दिखाई दे रहा है और दीवार पे पीछे हमें दो फोटो दिखाई दे रही है जो स्केनरी टाइप में हैं जिसमे फ्लावर्स बने हुए हैं।

इसके आस-पास में हमे काफी बड़े जंगल टाइप का भी दिख रहा है और कुछ बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं और ये जो ज़मीन है वो कुछ कच्चे टाइप मैं ज़मीन दिखाई दे रही है।

स्ट्रॉबेरी अमरुद पाइनएप्पल संतरा ऑरेंज यहाँ पे काफी सारे हमें फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे ऑरेंज लेने बास्केट भी रखा हुआ --

इस इमेज मे हमे एक बड़ा सा हवाई जहाज दिख रहा है ये जो हवाई जहाज है वो सफेद और नीले कलर से बना हुआ है।

इसमें हमें एक व्यक्ति दिखाई दे रा है जो यहाँ पे मछलियों क बेच रहा है। आप देख सकते हैं याँ पर मछलियाँ हैं कुछ ब्लेक कुछ सफ़ेद कलर की यहाँ मछलियाँ पड़ी हुई हैं।

हमें यहाँ पे कुछ बैठने की जगह भी दिखाई दे रही है यहाँ पे कुछ व्यक्ति भी हमें चलते हुए दिखाई दे रहे हैं एक व्यक्ति ने ब्लैक कलर का बैग टांग रखा है उसने स्वेटर पहन रखी हुई है।

इस पिक्चर में हमें एक लड़की स्टेस पर डान्स करती हुई नजर आ रही है इसने ब्लेक औ रेड कलर के कपड़े पहन रखें हैं इसके पैरों में इसने शूज पहन के रखे हैं।